इसमें चार बच्चे दिख रहे हैं झंडा लिए।

इसमें बहुत सारी कारें भी नजर आ रही हैं।

और इसका किनारा गुलाबी कलर का है।

और कुछ बिस्किट भी दिख रहे हैं।

साइड में दो आदमी भी खड़े हैं।

और छत के उपर सफेद कलर की सीलिंग लगी है।

और इसमें कुछ पेन और चाबी के गुच्छे भी दिख रहे हैं।

टेबल के ऊपर ग्लास और पानी की बोतल भी दिख रही है।

सामने कुछ दुकाने दिख रही हैं।

और ऊपर वाले टीन का शेड डला है।

और बाहरवाल कुछ बाइके खड़ी हैं और एक आदमी नजर आ रहा है।

और बाहरवाल बहुत बड़ा मैदान है।

इसकी साइड की रेलिंग व्हाइट और ब्लैक कलर की--

इनके पास कुछ धागे और कुछ प प्लास्टिक के बैग नजर आ रहे हैं।

जिसमें बहुत सारी मछलियां रखी हैं और एक छोटा सा टब भी है।

ऊपर में तेल के डब्बे रखे हुए हैं।

जिसने अपनी बनियान ऊपर कर रखी है।

और जमीन पर एक कचरे का डब्बा पड़ा हुआ है।

सामने एक बेंच पड़ी हुई है जिसके ऊपर एक आदमी खड़ा है।

और इसमें बहोत सारी मशीने रखी है।

और बांध की दीवारें काले कलर की हो गई--

कुछ हरी हरी घास है और दूर दूर पे कुछ पेड़ दिख रहा है।

जिसकी छत की बाउंड्री लाल और नीचे की दीवार सफेद है।

और जमीन पर एक पिंक कलर की टाट बिछी है।

और एक डिवाइडर बना है जिसमें हरा और पीला कलर लगा है।